इस फोटो के अन्दर एक बहुत बड़ी नहर दिखाई दे रही है या समुद्र दिखाई दे रहा है और इस समुद्र के अन्दर देखो कितना भी पानी कितना अच्छा दिखाई दे रहा है और साथ में यहां हरे-हरे कलर की कुछ घास-फूसे उग रही है।

दोस्तो इस फोटो के अंदर कार मेकेनिक कार एसेसरीज के नाम से एक दुकान दिखाई गई है।

दोस्तों इस वीडियो के अंदर एक स्टेडियम देखा गया है।

और गार्डन के अंदर छोटे-छोटे गमले रखे हुए हैं जो कि दिखने में काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं और कुछ फूल भी लगे हुए है जो कि बहुत सुंदर दिखाई दे रहे है ये वीडियो बहुत ही अच्छा है।

इस फोटो के अंदर किसी मंदिर का दृश्य दिखाया गया है या फिर कोई मंदिर ही दिखाई दे रहा है।